ये एक मस्जिद का फोटो दिखाई दे रहा है जोकि बाहर से सजी हुई है | ब्लू ग्रीन और आ रेड कलर के बैलूंस लगे हुए हैं | लगी हुई है।

बाहर ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है | ग्रीन और वाइट कलर से कलर की गई है | मस्जिद को एक व्यक्ति दिखाई दे लड़का दिखाई दे रहा है जोकि खड़ा हुआ है।

कच्ची से जमीन दिखाई दे रही है। यहां पर मिट्टी-मिट्टी हो रही है पीली मिट्टी सी लग रही है ये और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे --

और अंदर कुछ टीचर्स दिखाई दे रहे हैं जो की फ़ोन पर बातें कर रहे हैं पीछे की और खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये बैंक की फोटो दिखाई दे रही हैं एच.डी.एफ.सी. बैंक जो की ए.टी.एम. दिख रहा है | वहाँ पर कुछ पम्फ्लेट्स लगी हुयी है कुछ नम्बर दिए हुए हैं और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो बाहर की ओर खड़े हुए हैं। एक --

ये एक बैंक का फोटो दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक है ए.टी.एम. भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लोग खड़े हुए है।

मुर्गी फार्म दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी मुर्गियां दिख रही है व्हाइट कलर की मुर्गियाँ है यह|

फ्लाउअर की दुकान दिखाई दे रही है थर्मकोल के कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जिसमें फ्लाउअर रखे हुए हैं और बाकी इधर रखे हुए हैं गुलाब के इसमें पत्तियां दिखाई दे रही है मोगरे दिखाई दे रहे हैं गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं ।